माक्स वगैरह रखे हुए हैं। हम कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं।

यहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई है और काफी बड़ी मूर्ति है जोकि काफी सारा डेकोरेट है।

यहाँ पर एक बैंक हैं और जोकि बैंक के बाहर बोहोत सारी गाड़ियां कार वगैरह खड़े हैं।

और काफी सारी नदी हैं मतलब बहुत बड़ी नदी है और कुछ साइडों में पेड़ वगैरह लगे हुए हैं।

यहाँ पर पेड़ यहाँ पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं और नदी है यहाँ पर।